इसमें एक बहोत बड़ा कमरा दिखाई दे रहा है इस कमरे में बहुत सारी आलमारियाँ दिखाई दे रही है अलमारियों में बहुत सारी किताबे रखी हुई है।

और सीमेंट सीमेंटस नहीं सीमेंट है पूरे फर्स पे और कुछ मजदुर यहाँ काम करते हुए दिखाई दे रहे है।

इसमें कुछ अलमारीया बनी हुई है जिसमें क्रीम और सेलून का सामान रखा हुआ है।

इसमें एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है। रेल्वे स्टेशन में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमे रायगढ़ लिखा हुआ है।

में एक मैदान दिखाई दे रहा है। मैदान में पुरे में कच्चा मैदान है। मिट्टी दिखाई दे रही है। कुछ लोग दिखाई दे रहे है। मैदान में दो ऑटो खड़े दिखाई दे रहे है।

अ जिसमें एग नूडल्स पनीर नूडल्स मंचूरियन लिखा हुआ है और उस ठेले पर दो ओ आदमी खड़े हुए है।

किराने की दुकान में एक ल-ल-लकड़ी का काउंटर बना हुआ है सामने कुछ बोरियां रखी हुई है बोरियो के ऊपर एक आदमी बैठा है।

और एक आदमी लकड़ी के काउंटर के सामने बैठा है। सामने और दूकान के सामने प्याज आलू की बोरी रखी है।

इसमें मुझे एक बड़ा-सा कमरा दिखाई दे रहा है यह एक जिम है इस जिम में कुछ सिलींग पे लोइट लगी हुई है एक ए.सी लगा हुआ है।

में एक बड़ा-सा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमे बोहोत सारी खिड़कियां बनी हुई है खिड़कियों में पर्दे लगे है हॉल --

एक बड़ा-सा हॉल दिखाई दे रहा है जिसमे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमे समर ड्रीम्स छत्तीसगढ़ फोरम --